और पाछै मशीन सब रखा है। है। बगल में ए रूम का अन्दर है।

ये डीजल बांट रहा है।

एक बगल में आदमी खा रहे पाच्छे दोकान है ।